इस दृश्य में काउंटर दिखाई दे रहा है जहां बहुत सारे व्यक्ति लाइन लगाए हुए हैं।

गेट भी दिख रहा है जो की रंग बिरंगा कलर का है।

और फर्श पर टाइल्स भी लगे हुए हैं।

इस दृश्य में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसका कलर येलो और रेड है।

एक गोल सा फौवारा भी दिख रहा है।

तार भी दिखाई दे रहे हैं जो की लटक रहे हैं।

और एक सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू है।

व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जिनके कपड़ों का कलर ब्लू और पिंक है।

कैमरा भी लदा हुआ है और सीलिंस में लाइट भी लदे हुए हैं।

इस दृश्य में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ और संगीत कर रहा है |

और सीडी भी डिखाई डे रहा है।